यहाँ पे कुछ मुझे मकान भी दिख रहा है यहाँ पे कुछ सेन बोर्ड भी पे कार्यालय लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ बाइक भी दिखाई दे रही है।

यहाँ पे कुछ दान पे सु-सुनने यहाँ पे गेट भी लगे हुये है यहाँ पे --

यहाँ पे कुछ पेद्सी पेपे शन छ प्रीति लाभ बने --

यहाँ पे कुछ पेड़-पोधे भी दिखाई दे रहे है यहाँ पे कुछ बस भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ आदमी दिखाई दे रहे है।

यहाँ मुझे मकान भी दिख रहा हैं यहाँ पे मुझे पेड़ पौधे भी दिखाय दे रहे हैं यहाँ पे मुझे कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कुछ रोड ड्राइव दिख रहा हैं यहाँ पे तार भी लगा हुआ हैं तार बाउंड्री भी हुई हैं यहाँ पे--

दिवारें दिखाई दे रही है यहाँ पे कुछ टाइल्स भी दिखाई पेड़ पौधे भी दिख रहे है यहाँ पे लाइट के खम्बे भी दिख रहे--

यहाँ पे कुछ मुझे टाइल्स भी दिखाई दिख रही है यहाँ पे कुछ कुर्सी भी दिखाई दिख रही है यहाँ पर कुछ मुझे मकान टे टेबल दिख रही है यहाँ पे कुछ मकान में गेट लगे हुए है यहाँ पर कुछ दिख रा --